यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में 3डी स्पेस में नेविगेशन के बारे में है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि ब्लेंडर व्यूपोर्ट के जैसे 3डी स्पेस में पैन रोटेट और जूम कैसे करें
मैं मानता हूँ कि अपने सिस्टम में ब्लेंडर कैसे संस्थापित करें यह आप जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया ब्लेंडर संस्थापन पर हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स का अनुकरण करें
नेविगेशनमाउस के प्रकार पर निर्भर करता है जो आपके पास है
3 बटन वाला माउस या व्हील के साथ 2 बटन वाला माउस मैं ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की इस श्रृंखला के लिए व्हील के साथ 2 बटन वाले माउस का उपयोग कर रहा हूँ
पहली क्रिया हम देखेंगे व्यू का घुमना
यहाँ माउस और कीबोर्ड का उपयोग करके यह करने के तीन तरीके हैं
पहला हम माउस व्हील या स्क्रोल के साथ Shift की का उपयोग करेंगे
shift की पकड़कर रखें माउस व्हील को नीचे की ओर दबाएँ और माउस को घुमाएँ
दृश्य सीन बाएँ से दाएँ तथा ऊपर और नीचे माउस की दिशा में घूमता है
अब SHIFT की पकड़कर रखें और माउल व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रोल करें
दृश्य ऊपर और नीचे घूमता है
यह व्यू को घुमाने का दूसरा तरीका है
SHIFT की पकड़कर रखें और माउस व्हील को नीचे की ओर स्क्रोल करें
व्यू ऊपर की ओर घूमता है
SHIFT की पकड़कर रखें और माउस व्हील को ऊपर की ओर स्क्रोल करें
व्यू नीचे की ओर घूमता है
व्यू को घुमाने का तीसरा और आखिरी तरीका है कि माउस व्हील के साथ CTRL की उपयोग करें
CTRL की पकड़कर रखें और माउस व्हील को स्क्रोल करें
व्यू बाएँ से दाएँ और विपरीत क्रम में घूमता है
Ctrl की पकड़कर रखें और माउस व्हील को ऊपर की ओर स्क्रोल करें
व्यू दायीं ओर घूमता है
Ctrl की पकड़कर रखें और माउस व्हील को नीचे की ओर स्क्रोल करें
व्यू बायीं ओर घूमता है
आप व्यू को घुमाने के लिए अपनी नमपैड कीज़ का उपयोग भी कर सकते हैं
ctrl की और नमपैड2 पकड़कर रखें व्यू ऊपर की ओर घूमता है
Ctrl की और नमपैड 8 पकड़कर रखें व्यू नीचे की ओर घूमता है
Ctrl की और नमपैड 4पकड़कर रखें व्यू बायीं ओर घूमता है
Ctrl की और नमपैड 6 पकड़कर रखें व्यू दायीं ओर घूमता है
यदि आप लेपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आपको नमपैड के रूप में अपनी नम्बर कीज़ का अनुकरण करने की आवश्यकता है यह जानने के लिए कि नमपैड का अनुकरण कैसे करें यूजर प्रेफरेंस पर ट्यूटोरियल देखें
अब अगली क्रिया हम देखेंगे व्यू को रोटेट करना
अपने माउस व्हील को दबाएँ और समचतुर्भुज के रूप में माउस को घुमाएँ
यह टर्नटेबल रोटेशन देता है
आप रोटेशन की क्रिया पर थोड़ा और अधिक लचीलेपन के लिए ब्लेंडर में रोटेशन के प्रकार ट्रैकबॉल का उपयोग भी कर सकते हैं
इसके लिए आपको यूजर प्रेफरेंस विंडो में ऑप्शन को टर्न टेबल से ट्रैकबॉल में बदलने की आवश्यकता है
यह कैसे करना है यह सीखने के लिए यूजर प्रेफरेंस पर ट्यूटोरियल देखें
व्यू को बाएँ से दाएँ या ऊपर और नीचे रोटेट किया जा सकता है
अब व्यू को बाएँ से दाएँ रोटेट करें
ctrl और alt पकड़कर रखें तथा माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रोल करें
व्यू बाएँ से दाएँ और विपरीत क्रम में रोटेट होता है
ctrl और alt पकड़कर रखें तथा माउस व्हील को ऊपर की ओर स्क्रोल करें
व्यू बायीं ओर रोटेट होता है
ctrl और alt पकड़कर रखें तथा माउस व्हील को नीचे की ओर स्क्रोल करें
व्यू दायीं ओर रोटेट होता है
आप नमपैड पर शार्टकट कीज़ 4 और 6 का उपयोग भी कर सकते हैं
नमपैड 4 दबाएँ यह व्यू को बायीं ओर रोटेट करता है
नमपैड 6 दबाएँ यह व्यू को दायीं ओर रोटेट करता है
अब हम व्यू को ऊपर और नीचे की ओर रोटेट करते हैं
Shift और Alt पकड़कर रखें तथा माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रोल करें
व्यू ऊपर और नीचे रोटेट होता है
Shift और Alt पकड़कर रखें तथा माउस व्हील को ऊपर की ओर स्क्रोल करें
व्यू नीचे की ओर रोटेट होता है
Shift और Alt पकड़कर रखें तथा माउस व्हील को नीचे की ओर स्क्रोल करें
व्यू ऊपर की ओर रोटेट होता है
आप नमपैड पर शार्टकट कीज़ 2 और 8 का उपयोग भी कर सकते हैं
नमपैड 2 दबाएँ यह व्यू को ऊपर की ओर रोटेट करता है
नमपैड 8 दबाएँ यह व्यू को नीचे की ओर रोटेट करता है
आखिरी क्रिया व्यू को जूम करना
जूम इन करने के लिए माउस व्हील को ऊपर की ओर स्क्रोल करें
जूम आउट करने के लिए माउस व्हील को नीचे की ओर स्क्रोल करें
आसान है न
शार्टकट के लिए नमपैड पर प्लस और माइनस कीज़ का उपयोग करें
जूम इन के लिए नमपैड दबाएँ
जूम आउट के लिए नमपैड - दबाएँ
इसी के साथ ब्लेंडर व्यू पोर्ट में 3डी स्पेस में नेविगेशन पर अपना ट्यूटोरियल समाप्त करते हैं
अब 3डी व्यू को घुमाने रोटेट करने और जूम करने की कोशिश करें
शुभकामनाएँ
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है
oscariitbacइन और spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पर सम्पर्क करें contactspoken tutorialorg हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद